बहुत सारे तरबूज रखे हुए हैं और हर केले रखे हुए हैं और गोभी रखी हुई है।

यह एक लोहे का पिंजरा बना हुआ है इस पर रेड कलर के पक्षी वाईट कलर के पक्षी--

यहां पर सिक्स पंखुड़ी टाइप से कुछ रखे हुये है और वहां पर दो साइकिल खड़ी हुई है।

यहां पे ग्रीन कलर के पत्ते लगे हुए है किसी का हाथ दिखाई दे रहा है इसमे कलर दिखाय दे रहा है पर्पल कलर और इसमे बहुत सारे फ्लावरस लगे हुए है।

एक लेडिज साडी पहन के उसकी चोटी ब्लैक कलर की है।

इस आदमी ने ब्लू कलर का कपड़ा ढँक कर रखा रेड कलर की कुर्सी पर बैठा हुआ है।

आईना लगा हुआ है बड़ा सा और वहां पर कुछ सामान रखे है रैक पर पाउडर वग़ैरा और वो एक आदमी चप्पल पहना हुआ है।

एक आदमी मास्क लगाए हुए और एक औरत मास्क लगाए हुए रेड मास्क लगाए हुए खड़ी है।

यहाँ पर दो जगह पंद्रह-पंद्रह रूपये लिखा हुआ है और बहुत सारे समान लटके ब्लू कलर की एक लेडीज़ है एक साड़ी पहनी हुई लेडीज है।

यहा पर एक गाड़ी है बड़ी सी और पेड़ लगा हुआ है और बिल्डिंग्स बनी हुई है और वहा पर दो आदमी आ रहे हैं एक आदमी का हाथ दिख रहा है एक आदमी गाड़ी पर बैठा हुआ है और बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुए है यहा पर।

यहा पर एक रेड बॉक्स है बहुत बड़ा लेटर बॉक्स। जिसमे डे-- ब-- पोस्ट लिखा हुआ है। और एक आदमी दिख रहा है यैलो कलर की टी-शर्ट पहना हुआ है।

जिस पे ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन कलर है और इसमें बच्चे हैं डांस कर रहे हैं जो |